ये वाली दृश्य में ये मंदिर दिखाई दे रहा है इसके अंदर तीन चार मूर्ति लगी हुई है और यह दृश्य में --

ये वाले दृश्य में प्रकृति को दर्शाया गया है और यहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

कई ओ यहाँ पर पूजा करने आते हैं और ये दर्शन कर रहे हैं यहां पर ।

चाय मिलती है यहां पर लोग चाय पीने आते हैं और यहां पर कुल्हड़ में चाय भी मिलती है तंदूरी चाय भी मिलती है।

के लोग वहां खड़े हुए हैं सब्जियां देख रहे हैं और यह एक टेंपू खड़ा हुआ है और --

ये पिक्चर के अंदर माल का सीन बताया गया है यहां पर अनेक प्रकार की शॉपिंगो की दुकानें हैं यहां पर शॉपिंग की जाती हैं।

और यहां पर एमरजेंसी का बोर्ड लगा हुआ है और यहां पर पेशेंट हैं डॉक्टर भी रहते हैं इलाज होता है यह एक हॉस्पिटल है एक।

ये पिक्चर देखकर शादी का माहौल लग रहा है यहां पर यहां पर सात आठ जाने खड़े हुए है एक दूल्हा-दुल्हन खड़े हुए है।

कुर्सी लगी हुई है साइड में कॉफी मशीन लगी हुई है एक आदमी मुंह पे मास्क लगा के चश्मा लगा के खड़ा हुआ है।

और कई सारे लोग बाघ पूजा कर रहे हैं।

ये फोटो में मुझे दो भगवान दिखाई दे रहे हैं आ दो लेडी दिखाई दे रही है वो उनकी --

ये पिक ये पिंक सी लग रही है ये पीछे राजा महाराजाओ के महल बने हुए हैं पहाड़ है।

ओ तू दो तीन इ पेड़ नजर आ रहे हैं और वो बहोत हरे भरे हैं।

साइड में पेड़ पौधे दिख रहे हैं स्कूल पे व्हाइट ब्लू कलर का कलर हो रहा है और --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

दो तीन कुर्सियां लगी हुई हैं और कुछ छतरी लगी हुई हैं और ये एक --